यह एक सड़क की फोटो है।

उसमें चार लोग बैठे हुए हैं।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक शाखा है।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

यह एक बिल्डिंग है जो व्हाइट और ग्रे कलर की है।

एक एडवर्टाइजमेंट बैनर लगा हुआ है।

का बाजार लग रहा है यहाँ पर खूब सारी कैंडल --

जो कि व्हाइट और रेड कलर की लग रही है।

जो कि बहोत सुंदर लग रहा है।

यह एक कन्फेक्शनरी की दुकान है।

साथ में चार पांच कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है।

ईंटों की दीवारें खड़ी हो गई हैं।

स्टेचू है जो ब्लैक स्टोन पर बनी हुई है।